का गेट काँच का बना हुआ है। यहाँ बाहर बाइक भी खड़ी है।

एक मंदिर है | यहाँ मंदिर के बाहर बहोत से लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं | यहाँ पंडित जी खड़े हैं।

यहाँ पर लोगों के बेठने के लिए हरे रंग की कालीन बिछाई गई है यहाँ पर बहोत सारे पेड़ पौधे भी हैं।

यहाँ अभी रात का वक्त है एटीएम के अंदर लाइट और एसी भी है।

यहा एक जगह है। और इस जगह पे दिवाली मनाई जा रही है लोग पटाके जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

उस ऑटो मे लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं |

टावर भी है यहा दिन का वक्त है।

यह एक मंदिर है। यहा पर श्री राम और सीता माँ के चित्र को बनाया गया --

लाइट के पोस्ट भी है। यहा दिन का वक्त हुआ हैं।